यह मैदान में घास एवं छोटे-छोटे --

इस मंदिर में बहुत से भक्त पूजा --

योगा कर रहे है यहाँ व्याम कर रहे है ।

अनेक प्रकार के झूले अनेक प्रकार के दुकान --

आए है यहाँ पर बहुत से भीड़ लग --

दो पंडाल ऐसे बनाये है जो मंदिर के आकार का दिखाई दे रहे है।